पेड़ दिख रही तार दिख रही सड़क दिख रही।

इस चित्र में गाड़ियाँ दिख रही हैं घांस दिख रही है ट्रक ट्रेक्टर दिख रहा है।

इस चित्र में पेड़ दिख रहे है घास दिख रहा है।

मिट्टी कि सड़क दिख रही है एक कुत्ता दिख रहा है एक औरत दिख रही है पड़े दिख रहा है खम्बा दिख रहा --

घास दिख रही है फूल दिख रहे है।

इस चित्र में पेड़ दिख रहे हैं घास दिख रहा हैं लड़के दिख रहे हैं झाड़ियाँ दिख रही हैं खंभे दिख रहे हैं।